और उसपे एक ग्रीन कलर का पेंट है और नीचे एक गेट लगा हुआ है बड़ा ऊपर आसमान व्हाइट कलर का है और खिड़कियों पे काँच के गेट लगे--

इस पिक्चर मे एक मैन गेट लगा हुआ है ऊपर एक पोस्टर्स टाइप का है यहां पे कार्यालय जिला परिषद लिखा हुआ है।

पिक्चर में एक हॉल है और पीछे बोर्ड लगा हुआ है जो वाईट कलर का है पोस्टर जिसपे रेड कलर से मुक्ति नेत्र जाँच एवं--

पिक्चर में एक अ बस दिख रही है दो ऑटो दिख रही है और ऑटो ब्लैक कलर के है और पीछे व्हाइट कलर से अतुल लिखा हुआ है।

इस पिक्चर में एक रूम है जिसपे वाइट कलर का पेंट है और एक गेट लगे हुए है जिसपे आ पेंट पोता हुआ है।